फुग्गा लगा हुआ है जिसका कलर सफेद है नीला है लाल है पिला है ऊपर मे लाइट लगा हुआ--।

यह होटल का पिक्चर है यहाँ बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

यहाँ कई सारे कुर्सियाँ है नीचे सफ़ेद कलर की टाइल्स है| ऊपर लाइनिंग - लाइनिंग वाला दीवाल है अगल-बगल दीवाल है सफ़ेद और भूरा का | यहाँ बहोत सारे आदमी है।

यहाँ एक खेत का पिक्चर है| यहाँ एक बच्चा मछली पकड़ रहा है और पीछे में हरा-भरा घास है।

अ सामने दो-तीन आदमी दिख रहे है पीछे मे दीवाल है गेट है खंभा है ऊपर मे काला कलर का टीन रखा हुआ है नीचे सफेद-सफेद दिख रहा है खिड़की है।

बगल में एक ठो चक्का का वो दिखाई दे रहा है बाँस दिख रहा है झोपड़ी है सामने में हरा-भरा पेड़ है।

यहाँ बहोत सारे आदमी हैं सामने एक पेड़ है पीछे में कई मकान है।

एक मोबाइल दुकान है यहाँ एयरटेल लिखा हुआ है।

यहाँ तीन-चार आदमी दिख रहे हैं यहाँ कांच लगी हुई है टाइल्स लगी हुई है लाइट लगा हुआ है एक आदमी का चहेरा आया है।

अंदर में पीला का टेबल है कुर्सी है लाइट लगा हुआ है टाइल्स लगा हुआ है।

इसके पीछे एक पेड़ है यहाँ बहुत सारे मंदिर के गुंबज है तार गया हुआ है खम्बा है।

सामने एक सूरज है बगल में पानी दिख रहा है बिल्डिंग दिख रही है।

यह एक बिल्डिंग है सामने ही दो पेड़ हैं छोटे-छोटे।

यह राधा-कृष्णा जी का मूर्ति है| ये मूर्ति सफेद कलर में है बहुत सुंदर है नीचे में लाल रंग का टेबल है।